मुझे इस फोटो पर स्कूटी दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो पे पेड़ दिखाई दे रहे हैं मुझे इ--